इसमें लड़के की इंगेजमेंट की रस्में होती हुई नजर आ रही है जिसमे स्टेज को काफी अच्छे से डेकरैट किया गया है फ्लावर से कई सारे वैराइटीज हैं।

और यह दो पुल बने हुए है बीच मे से पानी भी दिखाई दे रहा है। आसमान काफी साफ --

यह जालौन का बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया है। यह एक ब्रांच है बैंक की जोकि उत्तर प्रदेश जालौन की है इसमे शटर में --

बगल में दुकान भी दिखाई दे रही है और ऊपर बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके ऊपर ए.टी.एम क्यूब --

तीन पर्सन बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसपेरेंट डोर लगा हुआ है।

ये एक झांकी का पिक्चर नजर आ रहा हैं जिसमे काफी ज्यादा लाइट लगाई हुई हैं और पीपल्स दिखाई दे रहे हैं या तो ये शादी का पिक्चर हैं या फिर मेले का पिक्चर हैं।

ये एक बैंक नजर आ रहा है जोकि स्टेट बैंक दिखाई दे रहे हैं। जिसमें लोग बहुत लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे है और एक व्यक एक लड़का जोकि काफी समय से कुछ रीड करता हुआ नजर आ रहा है।

ये एक गार्डन का पिक्चर है जिसमें स्टेज जो कि काफी अच्छे से डेकोरेट किया गया है जिसमें अं कई सारी चेयर्स रखी हुई हैं और अ --

इसमे एक स्कूल का रिहर्सल चल रहा है जिसमे कई सारी लड़किया रिहर्सल करते हुए नजर आ रही है।

ये एक फोर्ट किला नजर आ रहा है जो की काफी ज्यादा बड़ा और पुराना नजर आ रहा है । जिसमे खिड़कियाँ बनी हुई है। तीन फ्लोर दिखाई दे रहे हैं ।

ये शॉप काफी ज्यादा छोटी है।

ये एक खेत नजर आ रहा है। जिसमे कुछ मजदूर खेत को काटते हुए नजर आ रहे हैं और खेत की बुआई हो चुकी है।

काई सारे छोटे-छोटे गमले और इसमें खूबसूरती से लगाए गया एक फ्लैग रेड कलर का लगा हुआ है। बिल्डिंग बनी हुई है पिंक कलर की स्कूल कॉलेज की --